यह एक ज़नरल किराना स्टोर है जिसमे रोज रेगुलर --

कुछ छोटे पत्थर भी दिख रहे है।

और कुछ पतले-पतले पेड़ डंडियों--

जहाँ-जहाँ के एड्रेस पे है वह पहुँचता है और उसमे कुछ गालिया भी बनी हुई है आसपास बहोत हरियाली चारा--

यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया जिसमे बड़े से बड़ा व्यक्ति --

रनिंग करने के लिए आते है ऊपर बादल छाए हुए है इसके बीचो-बीच एक--

आने-जाने की रास्ते बनाये गए है जोकि बोहत बड़ा खम्बा है।

फसल उस पानी में डूबी हुई है इसमें एक बच्चा है रेड रेड की टी-शर्ट पहने हुए है।

फेंक सकते है सामने अनेकों प्रकार की डेकोरेशन की गई है नीचे --

यह एक प्राथमिक स्कूल है इसमें छोटे-छोटे बच्चे बैठी हुई है।

और एक रेड और ब्लैक कलर की चक्रे कु चक--

यहाँ किसी के बर्थडे का से सेलिब्रेट करने के लिए सजावट की गई है जिसका नाम पीहू है।

यह एक स्टील से सजे हुए डेकोरेशन की दूकान है जो इसके दुकान का नाम--